--शायद ये प्रदर्शन का लिए हाथ में एक ये माला रखा हुआ है। जो बहुत लम--

यह इस मंदिर में अंदर में भगवान की प्रतिमा स्थापित है सामने एक महिला दिख रही मुझे बगल में कुर्सी लगा हुवा हे--